बल्ब लगे हुए हैं कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

एक महिला गुब्बारे बेचती दिखाई दे रही है।

एक लड़का दिखाई दे रहा है।

जिसके बाहर बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सियां पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

कुछ व्यक्ति भी आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं।

कुछ स्टैचू भी दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

टावर भी दिखाई दे रहा है।

पीछे एक पानी की टंकी दिखाई दे रही--

यह तस्वीर एक पेट्रोल पंप की है।

एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

रेलिंग पर कपड़े फैले हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी विंडो बनी हुई हैं।

जिस पर घास उगी हुई है।

हरे रंग की लाइटे जल रही हैं।

एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

पास के मकान में गेट लगा हुआ है।

दीवाल पर मैप चिपके हुए हैं।

बहुत सारी लाइटे जल रही हैं।

पैक बॉटल रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में सूर्यास्त का समय दिखाया गया है।

बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति समान लेता दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी रैके बनी हुई है।

यह तस्वीर एक जिम की है जिसमें एक्सरसाइज करने वाली बहुत सारी मशीनें दिखाई दे रहे हैं।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

फुटबॉल का मैदान बना हुआ है।

पास में ही एक दूसरा बोर्ड है।

ट्रेन आती जाती दिखाई दे रही हैं।

एक विंडो से धूप आती दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक कॉस्मेटिक दुकान की है।

एक रेड कलर का डस्टबिन रखा हुआ है।

बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।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

खंभों पर स्टिकर्स चिपके हुए है।

बहुत सारे लाइटे लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक पुरुष स्कूटी से जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे रैके बनी हुई जिसमें सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।